मुझे इस तस्वीर में एक हेयर सैलून का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बहुत सारे पंखा भी दिखाई दे रहा है।

आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

सामने मे एक साइकल भी दिखाई दे रहा है।

दीवार पर स्विच बॉक्स भी लगा हुआ है।

दिवाल पर स्टील रॉड और मे वेट मेजरिंग मशीन दिखाई दे रहा है।

बाथरूम के अंदर एक गीजर भी लगा हुआ है।

ऊपर में ट्यूबलाइट और पंखा भी दिखाई दे रहा है।

दीवार पर फूल भी टंगा हुआ है।

डब्बा भी दिखाई दे रहा है।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

एक बिल्डिंग पर क्रॉस का साइन लगा हुआ है।

ऊपर में ट्यूबलाइट्स और पंखा भी दिखाई दे रहा है।

आसमान पर मून भी दिखाई दे रहा है।

दीवार पर ट्यूबलाइट और पंखा भी दिखाई दे रहा है।

टेबल पर एक रजिस्टर रखा हुआ है।

कई सारे स्ट्रीट लाइट भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बहुत सारे ट्यूबलाइट भी दिखाई दे रहा है।